घर दिखाई दे रहा है घर बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एस_बी_आई बैंक भी दिखाई दे रहा है।

जिम में बहुत सारे शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।